यहाँ ए. टी. एम. बैंक है जो अभी बंद दिख रहा है और बाईक -वाईक से भी अभी ये लोग पइसा -ओइसा निकाल के जा रहे है तीन -चार झन --

ये किराना दुकान है उसमे बहुत सारा कलर्स का तेल वगैरह दूध-वुध का कमल दूध का पैकेट वैकेट दूध का बहुत सारा रैक में सामान रखा गया हुआ है काउंटर में भी बहुत सारा इधर सामान है और--